दीवाल के बगल में एक भूरे रंग का दरवाजा है जिसमें पर्दे लगे हुए हैं।

सामने एक स्टेज पे सोफा रखा हुआ है स्टेज के पीछे लाल रंग का कपड़ा लगा है।

लाइटें लगी हैं दोनों तरफ झूमर रखे हैं।

ये एक छोटा सा बगीचा है जिसमें गेंदे के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

एक टेबल के ऊपर नील रंग की कवर डली है।

बाहर गोल गोल डिज़ाइन डाली गई है ऊपर ग्रिल जैसा लगा हुआ है।

सड़क में फ्लाई_ओवर बनाने का काम चल रहा है।

सामने एक पुजारी दिया जला रहा है।

चको चिप्स कुकी के डिब्बे रखे हुए हैं सामने--

ये एक डेंटिस्ट का क्लीनिक है क्लीनिक के बीच में कुर्सी रखी है ऊपर लाइट लगी हुई है सामने स्क्रीन है।

दीवाल पे एक शीशा लगा हुआ है शीशे के नीचे एक केबिन बन कैबिनेट बना है जिसमें छह ड्रॉर है।

सामनेएक हरा भरा पेहड़ है।

थोड़ी ही दूर में पीले रंग का बैरियर रखा है।

एक बड़ी सी नदी है नदी के किनारे मिट्टी का रास्ता है।

पेट्रोल पंप में गाड़ियां तेल भरवाने के लिए आई हैं।

ऊपर दो दुकानें खुली हुई हैं दुकानों के बाहर--

नीचे राधे एरिगेशन का फोर्ड लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए किनारे से सीढ़ी बनाई गई है।

के किनारे एक टिन का शेड डाला गया--

विमान की बिल्डिंग के बगल में हरी भरी घांस है।

गेट के बगल में स्कूल के बहुत सारे बच्चे खड़े हैं।

पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया गया है।

बिल्डिंग के एक हिस्से में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है।

सामने दो आदमी आ रहे हैं सीढ़ियों में कुछ लोग बैठे हैं।

बाहर एक आदमी खड़ा है बैंक के दरवाजे को कांच से बनाया गया है।

एक बच्चा खड़ा है बच्चे के सामने छोटा सा पानी का पूल है।

गार्डन के कोनों में लाल रंग के गुलाब फूल लगाया गया है।

चलने के लिए बालकनी बनाई गई है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं।

एक ऑरेंज कलर शीट के ऊपर मछलियों को रखा गया है।

सड़क के किनारे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर--

बिल्डिंग के बाहर एक बाइक खड़ी है एक स्कूटी है।

एक कार्यक्रम चल रहा है लोगों के बैठने के लिए सफेद कुर्सी लगाई गई है।

बीच में लाल कारपेट है किनारे हरी कारपेट बीछी हुई है।

बगल में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है स्किन के सामने लाइट है।

दूसरी दीवार पे बहुत सारे बटन लगे हैं।

कुर्सी की पीछे की दीवाल को लकड़ी से अलग अलग हिस्सों में करके सजाया गया है।

टैंट के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

एंबुलेंस के पीछे लोहे के पाइप लगे हुए हैं।

मैदान में कुछ कैंपिंग टेंट लगे हुए हैं।

जिसकी कुछ पत्तियां सूख चुकी हैं और कुछ पत्ती लगी है।